बड़ा सा मैदान है जो मट्टी का मैदान कुछ छोटे-छोटे घास है पर वो घास सूख गए यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां जमा है यहाँ पे यहाँ पे एक फंक्शन किया जा रहा है जिसका एक पेंट यहाँ पे बनाया गया है।

यहे एक भारत पेट्रोलियम का गाड़ी है जिसका ये फट गया है उसका उसके लिए एक पार्टी से उसको जमा किया जा रहे है उसके पास में एक घर है।

जो ईट से बना हुआ एक घर है एक आदमी निचे बेठा हुआ है गाडी का दरबाजा खुला हुआ-- और गाड़ी के पास में एक पतला पाइप ले के खड़ा किया हुआ है।

यहां पर दो मशीने है और यहां पर चार पिलर है उसके ऊपर एक छत है जिस पर बहुत सारी लाइट जली है और यहां पर इंडियन ऑयल का लोगो है।

साथ ही यहां पे एक कुर्सी भी लगाई गई है जिससे इसे सुंदर दिखाने में लग रहा है यहां पर बहुत रंग बिरंगी फूलों का इस्तेमाल किया गया है।